छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं केले दिखाई दे रहे हैं।

गन्ने के ईख दिखाई दे रहे हैं। पीछे कुछ केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कांच के दरवाजा दिखाई दे रहा है।

एक लंबी दीवार दिखाई दे रही है।

बिजली के कुछ तार दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहुत सारे आदमी और लड़कियां वर्जिश करते हुए नजर आ रही हैं नीचे बहुत सारी मैट बिछी हुई है।

इसके हाथ में एक वॉच बंधी हुई है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं सड़क दिख रही है।

सजा नीचे कुछ रंग दिखाई दे रहा है बहुत सारे टीचर दिखाई दे रहे हैं बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

बराबर में एक बेड दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे खिलौने की दुकान दिखाई दे रही--

बिजली का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं विंडो दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे पीछे घर दिखाई दे रहे हैं।

जिम करने के मशीने दिखाई दे रही है।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

बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे दो किसम के अंगूर दिखाई दे रहे है।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

पीछे गॉड जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।